यह एक स्टेट बैंक है और इसमें--

औरतीन आदमी खड़े दिख रहे हैं जो एक पीछे में है वह ब्लैक बैक टांगे हुए हैं।

यह एक खूबसूरत सी घर है।

जो रंग बिरंग पेंट की हुई है।

जिसके अंदर दो आदमी खड़े हैं।

काले कलर कीअंगूर रखे हुए हैं।

एक पिक्चर है जिसमें--

यह एक बड़ा सा फील्ड है और कुछ--

शाम हो रहे हैं।

पहले दुकान में कुछ आदमी दिख रहे हैं जिसमें कुछ हाथ धो रहे हैं और --

एक लेडी बैठी हुई है जो अपना कुछ काम भी कर रही है।

इस पिक्चर में कुछ फंक्शन की माहलें दिख रही हैं।

जिसमेंसजावट भी चल रही है।

कुछ काउंटर ए दिख रही है।

काम कर रहा है और उस काउंटर पे एक वाइट कलर की लाइटें भी जल रही है।

इस पिक्चर में मेला जैसा माहौल दिख रहा है।

और इसमें कुछ झंडे भी लगे हुए दिख रहे ।

लड़का सो रहा है और --

जिसमें बहुत सारे बुक ए भी रखी हुई है।

और घर में एक पर्दा भी है।

जो लगा हुआ है इंग्रेम --

इस पिक्चर में बहुत आदमी खरे दिख रहे हैं।

एक आदमी खड़ा है जो अपना फोन चला रहा है।

कुछ काम में चल रही है जो--

और इसमें पिक्चर में एक गड्ढे है।

गड्ढे के ऊपर भी--

इस पिक्चर में एक साइवर दिख रहा है ।

जिसमें कुछ--

काम चल रही है।

दिख रहे हैं और इस--

और दुकान में--

दो आदमी भी खड़ा है एक आदमी कुछ कर --

इस पिक्चर में एक बड़ा सा--

इस पिक्चर में--

रोड दिख रहा है।

दिख रहा है और रोड के साइड --

इस पिक्चर में एक घर है।

और घर में एक--

एक और टेबल है और दो चेयर और टेबल पे एक --

एक बाल्टी रखी हुई है और--

इस पिक्चर में तीन महिलाएं खरी दिख रही है।

जाली वाला टोकरी दिख रहा है और यह--

इस पिक्चर में--

और एक रेड कलर की मंदिर है जिसके पास--

और चेयर भी लगा हुआ है जो कि खालि --

इस पिक्चर में एक बड़ा सा नदी है।

इस नदी में तीन औरतें जाते हुए दिख रही है।

जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है।

जो ब्लैक कलर का शर्ट भी पहना हुआ है।

और बिल्डिंग के नीचे दो कार खड़े हैं।

और इस कार को दो --

आदमी पास में खड़े है जो एक आदमी है उस कार को धो रहे है और एक आदमी पकड़ --

इस पिक्चर में कुछ फंक्शन हो रहे हैं।

एक अस्टेट भी बना हुआ है और इस स्टेट पे खड़े हैं और कुछ नीचे चेयर --

कार के पास एक आदमी खड़ा है।

जो बीच में कुछ पौधे लगे हुए हैं बरे बरे पेड़ है।

और एक रास्ता जो है वो --

एक लैपटॉप भी दिख रहा है और एक स्मार्ट टीवी भी लगी हुई है।

ऊपर में एक वाइट बल्ब लटक रहा है।

लड़के खेल रहे हैं और इस फील्ड में एक लंबा सा पत्थर भी है।